टाटा स्काई के बैनर लगे हैं बजाज फाइनेंसरी के--

और कुछ लटकाने वाले भी दिखाए गए हैं।

पीछे पेड़ दिखाया गया हुआ है और सब बच्चे यूनिफॉर्म में बैठे है।

जहां पे शो कर रहे हैं बहोत सारे नेकले--